अअ कुछ व्यक्ति चल रहे हैं और साथ ही एक सफेद कलर की कार खरी हुई है।

ऊपर तीनचार रोशनी के--

जहां कुछ वर्जिश करने के लिए कुछ --

पीछे एक इमारत खरी हुई है।

जिनके सामने कई बाइक लगी हुई दिख रही है।

पिंक कलर की लहंगा पहना के बैठी हुई है।

और उनके साथ कुछ और भी कपड़े मौजूद हैं।

तस्वीर में एक गायक को दिखाया जा रहा है।

एक पोस्टर लगी हुई है कुछ फूल बिखरे हुए हैं।

दो-तीन बच्चे खड़े हुए हैं।

कुछ व्यक्ति मॉल के बाहर खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक--

अ इमारत दिख रही है जो पीले कलर की है और ब्लू कलर की हल्की-हल्की --

इस तस्वीर में हमें कुछ छात्र साइकिल पे बैठे हुए दिख रहे हैं।

उनके सामने कई साइकिल खड़ी हुई है एक बुजुर्ग व्यक्ति हमें जाते हुए दिख रहे हैं।

सड़क पे हरे कलर की घास दिख रही है।

जिस पे कुछ व्यक्ति जाते हुए हमें दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक सर्क की फोटो दिखाई दे रही है।

जिनके नीचे लाल कलर की--

कपड़े बंधे हुए हैं इनके पीछे--

अ एक व्यक्ति लेटा हुआ हमें दिख रहा है।

जिसके सामने एक पत्थर पे बैठे हुए एक व्यक्ति दिख रहे हैं।

जो चश्मे लगाए हुए टोपी पहने हुए हमें दिख रहे हैं वह पानी की और देख रहे हैं।

राइट साइड से दो कुर्सी लेफ्ट साइड से दिख रही है।

जहां हरे कलर का पौधा हमें दिख रहा है।

हरा पौधा भी दिख रहा है दरवाजा खुला हुआ है।

जहां कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है।

उसके बगल में एक पीले कलर की इमारत हमें दिख रही है।

एक सैनाई बजा रहे हैं और--

जहां बालविंद्र अकेडमी --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

पीछे पत्थर जैसा कुछ दिख रहा है और घास हल्की-हल्की हमें दिख रही है।

इमारत हमें दिख रही है जो सफेद कलर की है।

इस तस्वीर में हमें एक सड़क दिख रही है।

इस तस्वीर में हमें एक घर का दृश्य दिखाया गया है जहां भारत का ध्वज यानी तिरंगा हमें दिख रहा है।

उसके बगल में एक सोफा लगी हुई है।

व्यक्ति सफेद कलर की शर्ट पहने हुए दिख रहे हैं।

लगे हुए हमें दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक गाड़ी दिख रही है जिनके दो पहिए हमें स्पष्ट--

इस तस्वीर में हमें कुछ पौधे दिख रहे हैं जो हरे रंग की हैऊपर--

किन करके भी कुछ हमें दिखाई दे --

कुछ व्यक्ति बस के बाहर खड़े हैं एक व्यक्ति लाल शर्ट टी-शर्ट में--

साथ ही एक अ गुलाबी कलर की हमें केक दिख रही है।

कुछ बाइक्स हमें खरी हुई दिख रही है।

उसके बगल में ओप्पो का एक शोरूम दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक सड़क दिख रही है जिस पे हल्की-फुल्की पानी की परत हमें --